ये एक ये एक सड़क का चित्र दिखाई दे रहा है और एक सड़क के बगल में एक किसी झोपड़ी वगैरह बनी है और इस झोपड़ी में कई सारी --

पैर में कुछ मछा मसाज वगैरा कर रहा है और इस व्यक्ति के अगल बगल कई सारी लाइट वगैरा भी लगी हुई है।

कुछ योगा वगैरह कर रही हैं और ये महिला के पीछे की ओर कई सारे गमले वगैरह भी लगे हुए हैं।

ये एक स्टेज का चित्र दिखाई दे रहा है और इस स्टेज पर कई सारे लोग खड़े हुए हैं और इस स्टेज के --